पीच लोग अपना-अपना अपने भाषा में दे रहे हैं।

यहाँ एक नदी बड़ा सा है यहाँ --

स्कूल के साइड में एक बाइक लगे हुए हैं दो तीन जने बै --